बड़ी सी दुआर दिखाई दे रहा है जहां पे जालीदार ब्लैक कलर की गेट लगी हुई है।

पीछे घर दिखाई दे रहा है जिसमें खिड़कियां दरवाजे नजर आ रहे हैं।

छोटे छोटे पौधे रखाए हुए हैं।

रेक बनाकर के बहुत ही सारी सामान रखी हुई है जैसे भी फेस वास क्रीम पाउडर गुलाब जल वगैरा।

दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति खड़ा है उसके पीछे बनता हुआ घर नजर आ रहा है पोल दिखाई दे रहे हैं।

यह वाइट कलर का है और थोड़ा थोड़ा लाइट ऑरेंज है।

पानी की बोतले नजर आ रही है।

की रेलिंग दिखाई दे रही है जो करकट से घेरी हुई है।

खेत में पानी जमा हुआ है बीच से आरी बनी हुई है।

खजूर की पेड़ दिखाई दे रहा है।

बहुत से आदमी दिखाई दे रहे हैं।

पे रैक बना करके बहुत सारी दावाओ रखी हुई है।

कुछ स्कूल के बच्चे हाथ में ड्राइंग लिए हुए खड़े हैं।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

इस फोटो में बनती हुई घर दिखाई दे रही है।

थोड़े हल्के हल्के घास उगे हुए हैं बाउंड्री की हुई है।

कलरफुल फूलों से सजावट की हुई है।

जहां पे हल्की हल्की घास उगी हुई है।

मिट्टी की जगह पर वह सारे खेलने की समान बनाई हुई है जैसे वगैरा--

उसपे ढेर सारे तारे खींची हुई नजर आ रही है।